और बहुत सारी कुर्सियाँं पड़ी हुई हैं जिन पे कुछ लोग--

शॉल भी टंगे हुए हैं और काफी बड़ा काउंटर लगा हुआ--

ये एक टेंट लगाया गया है जिसमें कुछ--

और बीच में कुछ टापू टाइप का बनाया गया है जिसके बीचों-बीच एक बड़ा सा मगरमच्छ--

और चट्टानों की बाउंड्री बनी हुई है और इधर इस साइड आप देख सकते हैं काफी सुंदर बड़ा सा--

अह नहीं आई_डी_बी_आई बैंक का भी बोर्ड लगा हुआ है बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पे।

और मकान में शटल लगी हुई है जो कि खुली हुई है।

और ये कपड़ों की और बुक्स की दुकान है।

और जिसमें आप देख सकते हैं काफी प्यारी लाइटिंग की गई है।

आप देख सकते हैंये काफी बड़ा हॉल है और इसमें काफी सारी जिम वाली मशीनें रखी हुई हैं।

और साइड में ही कुछ बुक्स वगैरह भी रखी हुई हैं।

और कुछ सीढ़ियां गई हुई हैं ऊपर का नजार काफी सु खूबसूरत है।

आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा ग्राउंड है जिसपे स्टेज बनाया गया है और स्टेज पे एक बोर्ड भी लगा हुआ--

एक प्लेट रखी हुई है जिस पे काफी सुंदर डिस रखी हुई है।

ये एक काफी सुंदर मंदिर है।

और जिनके बाहर बड़ी बड़ी मूर्तियां बैठी हुई हैं जैसे कि काली जी हुई नरसिम्हा भगवान हुए।

ये एक काफी बड़ा हॉल है जिसमें आप देख सकते हैं काफी सुंदर एक आईडिया की--

और सामने ही काफी ऊँंचा पहाड़ हैजिस पे कुछ मकान बने हुए हैं।

और पेंट -सर्ट वगैरह और बच्चों के छोटे-छोटे मिनी -स्कर्ट --

और पलंगों के आसपास आप देख सकते हैं काफी सुंदर व्हाइट कलर के पर्दे लगाए गए हैं।

काफी सुंदर फूल और लाइटिंग लगी हुई है।

और सामने एक बड़ी-सी टेबल रखी हुई है जिसके साइड में एक टी_वी भी लगी हुई है।

ये एक सड़क है सड़क के किनारे पे एक मकान बने हुए हैं काफी सारे।

ये आप देख सकते हैं यह काफी बड़ी बिल्डिंग है जिसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दरवाजे--

और साइड में ही एक छोटा सा टीन शेड बना हुआ है जिसका गेट खोला हुआ है।

आप देख सकते हैं ये सामने एक--

ये एक बस स्टाफ है जहाँं पर काफी सारी बसें खड़ी हुई है।

ये एक नर्सरी है जो कि आप देख सकते हैं काफी सारी मात्रा में पेड़-पौधे रखे हैं।